ये भी मच्छी मार्केट है।

ये कोई स्वस्थ रक्तदान का कोई कैम्प है।

लड़का आगे खाड़ा होकर अपनी फोटो खिंचवा रहा है बॉडी के साथ। यह कोई जिम है।

यह कोई जिम है। जहाँ पे लड़का खड़ा होकर अपनी फोटो खिंचवा रहा है और पीछे पीछे सामान रखे हुए हैं जिम करने वाले।

ये कहीं का सीन है जहां पे समुद्र है। समुद्र के बीच बीच बना हुआ है और ये कई वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है और वो उस तरफ देख रहा है।

यह कोई पार्क है। जहां बच्चा झूला झूल रहा है।

और नदी है। काफी बड़ी नदी है और एक बोट है। बोट के आगे एक बंदा ख फोटो खींचा --

और ये कोई बुद्ध टेम्पल है।

यह कोई जगह है। जहाँ पे ऑटो रिक्शा खरी हैं।

ये कोई ऑफिस का सिन है।

और ये कोई पिक्चर रिलीज हुई है यह कोई पिक्चर का यह कोई पिक्चर का पोस्टर है जो की सोलह फरवरी लिखा हुआ है और --

ये बुकवा शो का शोरूम है यह।